फैक्ट्री भी है और एक आदमी औरत हैखड़े हुए हैंगे बहोत से हैं और बकरिया लगी हुई हैं।

एक लड़का है बैग टाँगे हुए है हाथ में किताब लिए हुए है वाइट कलर की टीशर्ट पहने है नीली जीन्स पहने हुए हैं।

इहा पे बस स्टैंड है बसे खड़ी है दो बसे --